और यहां पे एक लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

और यह एक प्लेटफॉर्म हैं जिसका नाम है--

जिम की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पे एक लड़का सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत ही छोटे छोटे दुकान भी दिख रहे हैं और एक हरे कलर का बोर्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

पे एक पानी का बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है जहां पे एक घर भी दिख रहा है और उस--